और हम बहोत सारे कागज पेपर भी रखे हुए है।

यह लग रहा है की कोई पंडाल है और यह पंडाल कपड़ों कपड़ों से सजाया गया है बहोत ही अच्छा लग रहा है दिखने में और बहोत सारे कुर्सियां टेबल कुर्सियां भी है।

यह लग रहा की यहां पर कुछ पीड़ा हो रही है हम्म्म कई सारे लोग है यहां पर और अपने सर पर कुछ लेके जा रहे है।

यहाँ लग रहा है कोई पार्क है और यहां पर एक बड़ा सा शेर बैठा हुआ है।

और बहुत सारे बलून्स भी बलून्स भी सजायें गए है।

यह एक छोटा सा हिरण का बच्चा है और यह इधर देख रहा है।